अअअ पड़ने के लिए या कुछ एक्स्प्लोर करने के लिए करे--

इस साइड में कुछ फल तो नहीं रहा है और सामने की अह जमीन में कोंई ग्रास विरास भी नहीं है एक बाइक खड़ी है। .

गाँव क्या पुरे जगह की व्यू नज़र आ रही है और इसमें कोरीयोग्राफी कराई है अपनी यह रॉक्स है यह डकन रॉक्स है काफ़ी पियारे रॉक्स है ये घुमने लायक है।

यह जो व्यू दिख रही है वो है एक चर्च इसके ऊपर स्टेज लगाया गया है स्टार्स लगे हुए है और इसके जो बनावट है वो चर्च बन रही है इसके आगे लैंप लगा हुआ है। .

और अनेक लाइट स्ट्रकचर और बोर्डस इसे कवर किया गया है ताकि प्लेयर्स सेपरेट रहे और आसमान एकदम लाल है।